perl में referencing and dereferencing पर स्पोकन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे:
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट editor उपयोग कर सकते हैं
आपको निम्न की कार्यकारी जानकारी होनी चाहिए:
यदि नहीं तो इस वेबसाइट पर उपलब्ध सम्बंधित perl ट्यूटोरियल्स को देखें
reference क्या होता है
एक reference एक variable array hash या एक subroutine का पॉइंटर या एड्रेस होता है
यह सीधे डेटा नहीं रखता है
reference एक आसान सघन स्केलर वैल्यू होती है
reference पर्ल कोड के प्रदर्शन को सुधारेगा जब आप बड़े डेटास्ट्रक्टर्स को पास या रिटर्न करते हैं
यह मेमरी सेव करता है क्योंकि एक वैल्यू पास करने के बजाय यह सबरूटीन पर रेफरेन्स पास करता है
पर्ल एक जटिल डेटा स्ट्रक्चर्स का आसानी से प्रबन्धन करता है
अब सीखते हैं कि एक reference को कैसे बनाते हैं
हम इसके आगे एक बैकस्लैश लगाकर किसी भी वेरिएबल सबरूटीन या वैल्यू के लिए रेफरेंस बना सकते हैं
एक स्केलर वेरिएबल यहाँ प्रदर्शित की तरह बैकस्लैश और डॉलर साइन से रेफरेन्स किया जाता है
एक ऐरे वेरिएबल बैकस्लैश और at the rate@ सिंबल से रेफरेन्स किया जाता है
एक हैश वेरिएबल यहाँ उदाहरण में प्रदर्शित की तरह बैकस्लैश और परसेंटेज % सिंबल से रेफरेन्स किया जाता है
dereference क्या होता है
जब एक रेफरेंस डीरेफरेंस होता है तो वास्तविक वैल्यू रिटर्न होती है
dereference रेफरेंस वेरिएबल को कर्ली ब्रैकेट में संलग्न करके किया जाता है
और कर्ली ब्रैकेट से पहले उस रेफरेन्स का प्रकार बताने वाला कैरेक्टर आता है
अब देखते हैं कि वेरिएबल्स को डीरेफरेंस कैसे करते हैं
एक स्केलर वेरिएबल डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स से डीरेफरेंस किया जाता है
एक ऐरे वेरिएबल at the rate @ सिंबल और कर्ली ब्रैकेट्स से डीरेफरेंस किया जाता है
एक हैश वेरिएबल परसेंटेज % सिंबल और कर्ली ब्रैकेट्स से डीरेफरेंस किया जाता है
अब स्केलर रेफरेंस और डीरेफरेंस के लिए एक सरल प्रोग्राम देखते हैं
अब मैं gedit टेक्स्ट एडिटर में एक सैंपल प्रोग्राम खोलती हूँ
टर्मिनल खोलें और टाइप करें: gedit scalarref डॉट pl ampersand और एंटर दबाएं
स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह निम्न कोड टाइप करें
अब मैं code समझाती हूँ
पहली लाइन एक स्केलर वेरिएबल $a घोषित करती है और 10 से इनिशिअलाइज़ करती है
पहले उल्लिखित की तरह स्केलर वेरिएबल बैकस्लैश और डॉलर साइन से रेफरेंस किया जाता है
यह लाइन वेरिएबल का मेमरी एड्रेस प्रिंट करेगी जो रेफरेंस की तरह बनाया जाता है
वास्तविक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए वेरिएबल कर्ली ब्रैकेट से पहले $ सिंबल लगाकर डीरेफरेंस किया जाता है
यहाँ ref फंक्शन reference type जैसे स्केलर या ऐरे या हैश रिटर्न करेगा
अब फाइल सेव करने के लिए ctrl+s दबाएं
अब मैं प्रोग्राम को निष्पादित करती हूँ
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें: perl scalarref डॉट pl और एंटर दबाएं
आउटपुट दर्शाये गए की तरह दिखता है
पहली लाइन मेमरी एड्रेस को दिखाती है जहाँ वैल्यू 10 संचित की जाती है
दूसरी लाइन वास्तविक वैल्यू 10 रिटर्न करती है
ref फंक्शन आउटपुट में scalar रिटर्न करता है
आगे समझते हैं कि एक सैंपल प्रोग्राम प्रयोग करके रेफरेंस और डीरेफरेंस ऐरे को कैसे बनाते हैं
मेरे पास पहले से सैंपल प्रोग्राम है मैं इसे gedit टेक्स्ट एडिटर में खोलती हूँ
टर्मिनल पर टाइप करें: gedit arrayref डॉट pl ampersand और एंटर दबाएं
arrayref डॉट pl फाइल में स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह निम्न कोड टाइप करें
अब मैं code समझाती हूँ
यहाँ पहली लाइन में मैंने @color नामक एक ऐरे घोषित किया है और इसे तीन वैल्यूज़ से इनिशिअलाइज़ किया है
यह बैकस्लैश @color से रेफरेंस किया जाता है जो ऐरे नेम है और $colorref को असाइन किया जाता है
print स्टेटमेंट रेफरेंस वैल्यू और डीरेफ़रेंस्ड वैल्यू को प्रिंट करेगा
अब फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएं
अब हम प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं
टर्मिनल पर वापस जाएँ और टाइप करें: perl arrayref डॉट pl और एंटर दबाएं
आउटपुट यहाँ प्रदर्शित की तरह दिखता है
पहली लाइन वेरिएबल के मेमरी एड्रेस का आउटपुट दिखाती है जो रेफरेंस की तरह बनाई जाती है
दूसरी लाइन वास्तविक वैल्यू दिखाती है जो डीरेफरेंस की जाती है
आगे हम देखेंगे कि एक ऐरे के लिए डायरेक्ट रेफरेंस को कैसे घोषित करते हैं
अब अपने program पर वापस आते हैं
मैंने एक ऐरे के direct reference को दिखाने के लिए मौजूदा प्रोग्राम को बदल दिया है
आप दिखाए गए की तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रयोग करके एक ऐरे के लिए direct reference बना सकते हैं
डीरेफरेंस करने के लिए एरो ऑपरेटर > प्रयोग करें
print स्टेटमेंट आउटपुट की तरफ green प्रिंट करेगा
यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट इंडेक्स ऑफ़ 1 की वैल्यू लेता है जो कि हमारे प्रोग्राम में green है
फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएं
टर्मिनल पर वापस जाएँ और टाइप करें: perl arrayref डॉट pl और निष्पादन के लिए एंटर दबाएं
मैं एक उदाहरण दिखाऊँगी कि समान कोड फाइल में direct hash reference कैसे प्रयोग करते हैं
आप यहाँ प्रदर्शित की तरह कर्ली ब्रैकेट {} प्रयोग करके हैश पर direct reference बना सकते हैं
इसे डीरेफरेंस करने के लिए एरो ऑपरेटर > प्रयोग करें name हैश की है
कोड के इस ब्लॉक के निष्पादन karneपर दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स आउटपुट में sunil प्रिंट करेंगे
आगे हम देखेंगे कि सैंपल प्रोग्राम के साथ ऐरे रेफरेंस पर एलिमेंट्स को कैसे जोड़ते मिटाते एक्सेस करते हैं
मेरे पास पहले से एक सैंपल प्रोग्राम है मैं इसे gedit टेक्स्ट एडिटर में खोलती हूँ
टर्मिनल खोलें और टाइप करें: gedit arrayrefadd डॉट pl ampersand और एंटर दबाएं
arrayrefaddpl फाइल अब gedit में खुलती है अपनी फाइल में यहाँ प्रदर्शित की तरह कोड टाइप करें
पहली लाइन ऐरे को इनिशिअलाइज़ करती है
हमने backslash @numarray से ऐरे को रेफरेंस किया है और $ref से असाइन किया है
अब हम देखेंगे कि ऐरे रेफरेंस से एक विशेष एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं
हमें एक विशेष वैल्यू को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में ऐरे इंडेक्स को और इसे डीरेफरेंस करने के लिए एरो ऑपरेटर > प्रयोग करने की ज़रुरत है
प्रिंट स्टेटमेंट इंडेक्स ऑफ़ ज़ीरो 0 की वैल्यू प्रिंट करेगा
push फंक्शन ऐरे रेफरेंस की अंतिम स्थिति पर एलिमेंट्स को जोड़ता है हमारे केस में मौजूदा ऐरे 1 2 3 4 के अंत में 5 6 7 जोड़े जाते हैं
यह प्रिंट स्टेटमेंट ऐरे रेफरेंस पर जोड़ने के बाद आउटपुट दिखाता है
pop फंक्शन ऐरे रेफरेंस के अंतिम स्थिति से एलिमेंट को हटाता है
हमारे उदाहरण में 7 मौजूदा ऐरे रेफरेंस से हटाया जायेगा
ऐरे रेफरेंस से मिटाने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट दिखाता है
अब फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएं
अब program को निष्पादित करते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें: perl arrayrefadd डॉट pl और एंटर दबाएं
आउटपुट यहाँ प्रदर्शित की तरह दिखता है
अब हैश रेफरेंस के एलिमेंट्स को जोड़ने हटाने और एक्सेस करने के लिए एक अन्य सैंपल प्रोग्राम देखते हैं
टर्मिनल पर टाइप करें: gedit hashrefadd डॉट pl ampersand और एंटर दबाएं
यह gedit में फाइल hashrefaddpl खोलेगा
अब मैं सैंपल प्रोगाम समझाती हूँ
मैंने direct hash reference घोषित किया है जो स्केलर वेरिएबल $weektemp में संचित किया जा सकता है
मैंने हैश रेफरेंस को दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट और डीरेफरेंस के लिए एरो ऑपरेटर प्रयोग किया है
यह कोड मंडे से फ्राइडे तक की टेम्प्रेचर वैल्यूज़ को संचित करता है
मैं हैश कीज़ से लूप करने के लिए कीज़ बिल्टइन फंक्शन प्रयोग कर रही हूँ
प्रिंट स्टेटमेंट हैश के प्रत्येक एलिमेंट को प्रिंट करेगा
हम यहाँ प्रदर्शित की तरह एलिमेंट की विशेष वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं
प्रिंट स्टेटमेंट मंडे का टेम्प्रेचर प्रिंट करेगा
अब file को सेव करें
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें: perl hashrefadd डॉट pl और आउटपुट देखने के लिए एंटर दबाएं
हैश कीज़ और हैश वैल्यूज़ रैंडम यदृच्छित ऑर्डर में संचित की जाती हैं
प्रदर्शित आउटपुट उस क्रम से सम्बंधित नहीं होता है जिसमें वे जोड़े गए थे
इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं इसे सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने उदाहरणों से निम्न के बारे में सीखा:
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है हमारी hashrefadd dot pl file में weektemp हैश में नयी कीज़ saturday और sunday जोड़ें
अंत में saturday की मिटायें
हैश weektemp प्रिंट करें
प्रोग्राम को सेव और निष्पादित करें अब परिणाम जाँचें
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को साांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम कार्यशालाएं चलाते हैं और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें